उसमें पुली पे जो एक्टिवा स्कूटरी वो खड़ी हुई हैऔर--

और यहां पे जो रेड कलर की कुर्सी लगी हुई हैं।

इस पिक में किसी बिल्डिंग का जो है वो रिपेयर्स का काम चल रहा है इसमें टू वर्कर काम कर रहे हैं।

कर रहे हैं मेंटेनेंस का और उन्होंने येलो कलर की कैप पहन रखी हैसेफ़्टी कैप और ऑरेंज कलर की जैकेट पहन रखी है।

एक दिख रही है डेंटिस्ट शोरूम हॉस्पिटल की जिसमें डेंटिस्ट का टेबल लगा हुआ है डॉक्टर की कुर्सी लगी हुई है।

डोड डिस्क मशीनें लगी हुई है। यहां जिसमे बैक साइड पे--

ए युवा इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा हुआ है साथ में--

लोन के जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है।

पिंक और लाइट ब्लू कलर के बैलून लगे हुए हैं और पास में बॉक्स पड़े हुए हैं जिस पे बेबी लिखा हुआ है।

के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है पास में जो कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है।

और इसमें फैन दिखाई दे रहा हैटेबल फैन--

पैक करके रखा हुआ हैऔर खानों में रखा हुआ है।

और इसके पास में गत्ते के डिब्बे खाली पड़े हुए वह दिखाई दे रहे हैं।

और उसकी इंक की पिक दिखाई दे रही है।

और वो जो आ ब्रदर आर्ट गेअर साइड का ब्लू और वाइट कलर का बॉक्स है।

ये किसी खंडहर की पिक दिख रही है जिसमें--

जो खंडन हो चुका है और--

अंडरवेयर की पिक के डिब्बे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें जोकी के डिब्बे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं अंडरवेयर के और --

और नदी का पानी बहुत साफ दिखाई दे रहा है।

जीन्स पेंट पड़ी हुईदिख रहीहैं।

एक रोज की पिक दिखाई दे रही हैजो बहुत सारे रेड कलर के रोज पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

हल्की-हल्की की छोटी-छोटी पानी की बूंद पड़ी हुई है वो दिखाई दे रही है।

ये किसी चर्च के बाहर की पिक दिखाई दे रही है जिसमें बहुत साबे सारे जो फादर --

जो कि किसी फैक्ट्री में बनकर तैयार हुए हैं और--

जो बड़ी सी चट्टान के बीच में एक गुफा बनी हुई है और उसमें एक शख्स एक लड़का वह गुफा के अंदर --

ये एक शॉप की पिक दिखाई दे रही है जिसमें बच्चों के--

गेम के रिमोट के डिब्बे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर ट्यूब जो है लाइट वह लगी हुई दिखाई दे रही है।

रेस्टोरेंट और इसी में पिक में ग्रीन कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

यह एक रोड की पिक दिखाई दे रही है इसमें स्कूटर और मोटर पे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैंऔर कुछ गाड़ियों में आ रहे हैं।

यह किसी शॉप की पिक दिखाई दे रही है।

चाबी वगैरा वो दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा स्प्रिंग वो दिखाई दे रहा है।

कि फूलोक से सजाया हुआ कुछ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी भीड़।

जी पिक में एक खेत सा दिखाई दे रहा है।

साइड पे लोहे के ग्रिल लगे हुए दिखाई दे रहा है।

इसमें दो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें एक ब्लैक कलर की भैंस और उसका बछड़ा वो दिखाई दे रहा है।

इस पिक में एक संस्कृति।